यह एक बैटरी वाले टेंपू का दृश्य है यहां पे तीन टैंपो नजर आ रहे है।

उस पर वाइट कलर का स्टिकर दिखाई दे रहा है।

सामने एक आदमी नजर आ रहा है जो की ब्लैक कलर का जर्सी पहना हुआ है उसका बालों का रंग ब्लैक है।

नीचे तथा पानी भी है जो की ब्लैक और ब्राउन करके नजर आ रहा है।

एक मिटी कलर का स्वेटर पहना हुआ है तथा एक लेडीज ने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्ल्यू कलर की जींस पहना हुआ है।

काफी सारे लाइट नजर आ रहे हैं जो कि ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ सीढ़ी भी दिख रहे हैं जो कि ब्राउन और ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे रंग बिरंगे साइकिल नजर आ रहे हैं जैसे रेड ब्लू ग्रीन येलो आसमानी।

दीवारों का रंग ऑरेंज येलो कलर का दिखाई दे रहा है उसपे वाइट कलर का एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां एक पोल भी दिख रहा है जोकि सिल्वर कलर का है उसपर काफी सारे तार दिख रहे हैं जोकि ब्लैक कलर का नजर आ रहा है।

यह एक शॉप का दृश्य है पीछे दीवारों का रंग व्हाइट कलर का है।

मार्बलस भी दिखाई दे रहे है मार्बलस का रंग ब्लैक कलर का है और यहाँ काफी सारे घास दिख रहे है घास का रंग ब्राउन और हरा कलर का है।

यहां एक सोफा दिख रहा है जो की वाइट कलर का है यहां एक टेबल दिख रहा है।

यहां एक गाड़ी भी दिख रहा है जोकि रेड कलर का है उसका टायर का रंग ब्लैक है।

यहाँ कुछ गाड़ी भी दिख रही है जो की ब्लैक व्हाइट और रेड कलर की है।

और यहां कुछ खजूर पेड़ भी दिख रहे है जो कि हरे और ब्राउन रंग के है यहां कुछ पोल भी दिख रहे है जो कि ब्लैक कलर के हैं उस पर डिजाइन बना हुआ है।

यहां पे कई सारे घास फूस नज़र आ रहे हैं जो कि हरे और ब्राउन के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है यहां पे काफी सारे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं जो कि हर और ब्राउन रंग के हैं।